यहां पे बहुत सारे पेड़ है जो की खेजूड़ के और बहुत सारे हैं यहां एक झोपड़ी जैसा बना हुआ है यहां पर जाली भी लगी हुई है लोहे --

यह एक हिरण है जोकी खुली आसमान में घूम रही है यहा एक साईड बोहोत सारे उः सर्कल जैसे बने है यहां पे।

यहां पे एक अंकल गायको टेंपू -उ-उ में भर रहे है यहां पे घुसाई बस खड़ी हुई है आ साइड घुसाई बाइक भी है।

यहां एक गार्डन जैसा व्यू हैयहां पर बिल्डिंग जो की बहुत ही लंबी चौड़ी है यहां पर बिल्डिंग का कलर व्हाइट और ब्लैक में है।

यहां एक ज़ू है जो की बहुत प्यार यहां पर एक बोहतसा दो जानवर है यहां पर शायद मोर है और यहाँ पे--